लीची थोड़े सफेद और लाल रंग की है।

लिचीयो को प्लेट के ऊपर रखा हुआ है।

वैन गाड़ी भी जो रास्ते के बगल में है और--

और उसके साथ उसे कागज वाली चाभी भी दे रहा है।

जो चौकीदारी कर रहा है।

एक दुकान है जो ऑरेंज रंग का है।

उसके अंदर टेबल भी है और बहुत--

पर चार दुकान हैं दो दुकान खुले हैं।

इसमें मुझे बहुत सारे डब्बे दिखाई मिल रहे हैं।

इस पत्थर में दो गुफे हैं दो गुफा है।

बल्ब भी रखा हुआ है और उसे घर के पर्दे ब्लू कलर का है।

बाहर सब बिल्डिंग भी है और एक ईटा से बना हुआ एक छोटा सा घर भी है।

दोनों की शक्ल बंद है और उन दोनों के पीछे एक मूर्ति है और आगे दो टेबल है और उन दोनों के कपड़े सेम है।

और उस ग्राउंड के आजू बाजू बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ और बिल्डिंग्स हैं।